बहुत सारे हिरण भी दिखाई दे रहे है और लकड़िया भी दिखाई दे रहे है हिरण जंगल खा रहा है और यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे मर गए है।

यहाँ एक जग एक चम्मचएक डेक एक ग्लास और एक प्लेट दिखाई दे रहा हैं।